बोरिया रखी हुई है यह बहुत ज्यादा बड़ा लग--

जिसमें कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिख रही है।

बंदीपुर टाइगर रिजर्व की एक बस दिख रही--

रहा है टीचर बच्चों को पढ़ा--

मुझे एक चश्मे की दुकान दिख रही--

मुझे इस पिक्चर में लाइट --

साइकल दिखाई दे रही हैं।

मुझे इस पिक्चर में बाइक --

बहुत बड़ी फैक्ट्री दिख रही--

जिसमें बहुत सारा काम हो--

तेल जिसमें सभी कंपनी के--